यो तस्वीर बोहोत बड़ी सडक की से इसपे बोहोत सारा पानी--

बहोत सारा सामान धरिया हुआ से और ऊपर--

पुल ऊपर एक सकूटर खढ़िया से --

यहां पर बहोत सारे तराजू भी धरे गए --

यह तस्वीर बहुत बड्डी मिल की से इसमें बहुत ऊचे ऊचे स्तंभ बने है।

ये स्टूडेंट्स टेबल पे सामान रख कर कुछ काम कर रहे हैं।

और यहां पे बहोत सारे लोग--

ये तस्वीर बहोत सारे स्टूडेंट्स की है।

योगा कर रही है इन्होंने मैट बिछा रखी है।

या तस्वीर बहोत बड़ी मशीना की से यह मशीन अलग अलग तरह की से।

यहां कुछ पाइप भी धरे गए से।

यो तस्वीर एक चर्च की लाग रही है।

यह तस्वीर एक एशियन पेंट की दुकान की से यहां बहुत सारे डब्बे धरे हुए से।

इनके बीच बॉक्सिंग हो रही है।